ये एक कार शोरूम है इस स-स शोरूम में सभी तरह के कार मिल सकती है और इसमें बहुत सारी लाइट भी लगी हुए है और--

और भी कुछ लोग फल फ्रूट ले रहे हैं इसी दुकान पर से और एक सामने की तरफ घर भी है और आसमान बहुत बड़ा-बड़ा है।

कैमरे भी लग रहे है कुछ फुटबॉल भी रखी हुई है तो कुछ जूते भी रखे हुए है और कुछ एक कुर्सी भी रखी हुई है एक रिबन भी है सेट कलर में।

और एक कांटा भी रखा हुआ है जिसमें लाल बत्ती जल रही।

और कुछ चेयर भी रखी है और कुछ स्टूल भी रखे गए हैं और बहुत सारे सामने की तरफ पेड़-पौधे और घर भी बन रहा है और आसमान भी बहुत बड़ा दिख रहा है और नीचे कुछ घास भी है।

ये एक बहुत बड़ी त्रीम नदी है। जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है और कुछ अगल-बगल पेड़-पौधे भी हैं और --

कुछ घास भी है और सामने की तरफ भी कुछ पेड़-पौधे हैं और बहुत बड़ा आसमान भी दिख रहा है और कुछ वो- खेत की तरफ पानी भी भरा हुआ है।